बिरसा रेलवे स्टेडियम को दिखाया गया है।

यह एक पेट्रोल पंप का इमेज है और उस पेट्रोल पंप की ऊपर की छत है वह सफेद रंग से है।

और यहां पर अने हिरन की अनेक झुंड घास खा रही है।

और यहां पर एक टांगने के लिए कुछ है।

उसके पीछे एक इस दुकान भी लगाई गई है।

जिसके बाहर में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगाए हुए टांगे हुए दिखाए गए हैं।

वहां पर अनेक प्रकार के सलवार सूट मिलते हैं और बहोत ही अच्छे रेट पर मिलते--

कुछ आगे में पिंक कलर और हरे कलर की सलवार सूट को टांगा गया है और एक आदमी लेकर बैठा हुआ है टेबल पर।

वहां एक पोल पर कुछ गमला में फूल को लगाया गया है।

उसके अगल बगल अनेक प्रकार के इमारत बनाई गई है।

नदी में कुछ श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं।

यह कोई हिन्दू धर्म का त्योहर का इमेज है पर अनेक ही भिड़ बहुत ही ज्यादा है पब्लिक की--

पूरे आसमान नीले कलर से बदलो से घिरा पड़ा है।

दो आदमी काले रंग की ड्रेस मेने और एक आदमी हल्की सी लाल कथई कलर की ड्रेस पहना हुआ है और पीछे में कुछ गाड़ियां लगी हुई है।